ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लिखा हुआ है तेजा बुक स्टॉल ।

के ऊपर मुझे ब्लेक कलर की दिवार भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे दो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि व्हाइट कलर की है।

इस पिक्चर मुझे एक दीवार दिखाई दे रही है जो कि व्हाइट कलर की है।

इंडियन ऑइल करके लिखा हुआ है पीछे मुझे आहार भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे कुछ साइक़िले दिखाई दे रही हैं इनके पीछे में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है रूम के ऊपर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है।

ऊपर मुझे आसमान दिख रहा है जो कि ब्लू और व्हाइट कलर का है।

इनके सामने मुझे कंप्युटर दिखाई दे रहा है।

मुझे पीछे मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है कान्टैक्ट नंबर ।

और इसके नीचे मुझे फूलों से बनी हुई माला भी दिखाई दे रही है।

कलर का शर्ट पहन रखा है इसके पीछे मुझे एक येलो कलर की बस दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर मे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है जिसपर पिंक कलर से डेकोरेशन से --

झूले के सामने मुझे एक चेयर दिखाई दे रही है जो कि येलो कलर की है चेयर के सामने मुझे एक --

घर के पीछे मुझे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो की ग्रीन कलर के है ऊपर मुझे आसमान दिखाई --

कुछ बंजर जमीन दिखाई दे रही है उस जमीन के पीछे मुझे बहौत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।